यह तस्वीर में मुझे एक आसमान दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर मुझे आसमान बिल्कुल साफ सुथरा और सुंदर दिखाई दे रहा हैं यह दृश्य देखने पर काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा हैं।